इस रेस्टूरेंट में एक नहीं बहोत सारे टेबल लगे हुए है जिस पर--

हमें इस दृश्य में एक बहोत बड़ा घर दिखाया जा रहा है।

लाइटनिंग का सामान बेचा जाता होंगा ।

हमें इस बिल्डिंग का बोर्ड आधा ही दिख रहा है।

वह दिख रहा है जिसने काले और--

इस दृश्य में हमें एक सड़क दिखाई जाती है।

हमें उसी के थोड़े आगे एक बाइक भी जाते हुए दिख रही है।

छत का रंग अंदर से तो सफेद और पीला बा--

इस दृश्य में हमें एक जगा --

आगे सर दिखाए गए हैं जो व्हाइट बोर्ड पे बच्चों को दिखा रहे हैं।

चीजें हमें यहां पर बेचने के लिए दि--

तो यहां पर काफी सारे बान के पत्ते भी गिरे हुए हैं।